द्वार सजे हुए हैं। जो लाल गेरुआ रंग का है और इसके चारो ओर रास्ते में हरियाली पेड़ लगे हुए हैं।

यह किसी रोड के किनारे का है जो रोड के किनारे बोहोत बड़े अपार्टमेंट जैसा दिखाई पड़ रहा है। जिसमें से दस पंद्रह फ्लोर होंगे और उस अपार्टमेंट के नीचे कुछ पेड़े कुछ पेड़ हैं और रोड में एक कार जा रही है।

यह किसी मेले के स्थान का है। यह कोई धार्मिक परिद्वार मना रहे हैं। जहाँ पे अपनी कुछ लोग भगवान को याद कर रहे हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आये हुए हैं। वो ध्यान में मग्न हैं और इसमें कुछ पंडाल भी बने हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल के रूप में लग रहा है।

उठाए उठाए किसी सामग्री द्वारा उठाए हुए धो रहे है।

और उसमे कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है हेयर एक्सपर्ट टू आर्डर और उसमें कुछ बाल के कटिंग किये व्यक्ति के फ़ोटो हैं।

कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह रैली पूरी तरह सन्नाटा है और यहाँ पर इसके बाहर एक स्कूटी और साईकिल रखी हुई है।

यह किसी बाजार की रोड की अस्थान है और इसमें इसी रोड में इसके उपर बोहोत ही वायर एक तरफ से दूसरी तरफ खिचे गए हैं। इसमें कुछ ओटो चल रहे हैं और एक मोटरसाइकल दोना दो मोटरसाइकल रोड क्रॉस कर रहे हैं।